सामने एक रेड़ी लगाए कुछ आदमी बेच रहा है जहां पर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं और आसमान भी दिखाई पड़ रहा है जिस पे बादल छाए हुए हैं।

यहां पर बाउंड्री घिरी हुई है जिसके दरवाजे नीले कलर में है और इसके पीछे काफी पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

यह पीले कलर में है इस पर घास फूस उग आये हैं और पीछे बहोत ही ज्यादा पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

उपर आसमान भी दिख रहा है और नीचे काफी पेड़ पौधे भी हैं।

भी नजर आ रहे हैं और नीचे माइटी भी दिख रही है जो की हरे कलर में है।

हाथ में या बंदूक पकड़ा हुआ है और सामने निशानेबाजी करने वाला पोस्टर भी लगा है।

नीचे बहुत ही पेड़ की पत्तियां पड़ी हुई है जो सुखी है और मैदान भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें काफी महिलाएं फोटो लेते हुए दिख रही हैं जिनका चेहरा ब्लर है।

पीछे कुछ लोग हैं जो की दूध निकालते हुए नजर आ रहे हैं और वो दूध का ड्रम धरा हुआ है।

ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहे हैं और एक ब्रिज भी दिखाई दे रहा है जो की बहोत ही बड़ा है।

आसमान भी दिखाई दे रहा है और नीचे रोड जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पर कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई है।

यहां पर फूल और बड़े बड़े पत्तियों से यह दृश्य सजाया गया है।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

पीछे काफी बाइके की खाड़ी की गई हैं जिसमें ढेर सारी मात्रा में बाइक खड़ा खड़ी की गई हैं।

इस तस्वीर में हमें एक नदी का दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ नाए भी खड़ी हुई है।

इस तस्वीर में हमें एक नदी दिखाई दे रही है जिसमे कटे हुए पेड़ गिरे हुए है।

जिस पर लिखा हुआ है टोन एस_एस और एडीडास ।

नीचे फर्श लगा हुआ है और पीछे को सामान रखा दिखाई दे रहें--

सामने काफी कपड़े रखे हुए हैं कबड में रंग बिरंगे कलर के।

सामने कुछ फूल पाती भी नजर आ रहे हैं और उनकी परछाइयां भी दिखाई पड़ रही है।

पीछे भी काफी घर है जो खंडहर टाइप हैं। ऊपर डिश भी लगा है और पीछे पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक ऑफिस का कमरा दिख रहा है।

एक सोफा भी रखा हुआ हैं जिसपर व्हाईट कलर की गद्दी है और एक डस्टबिन रखा है जो हरे कलर में--